एक शादी का माहौल है उसमें एक लेडीज है और एक दुल्हन भी दिख रही है पीछे उसको कुछ खिला रही है ।

और यहाँ पे एक भी बना हुआ है दो पिलर दिख रहा है।

दो आलग अलग-अलग बाइक का दिख रहा है। एक आदमी भी दिख रहा है। एक हार्डवेयर शॉप है। एक पंखा भी दिख --